जली हुई है बहोत सारी मोमबत्ती जल रही है।

और नीचे कैरट भी रखी हुई है फ्रिज को रखने के लिए | पीछे कुछ पेपर वगैरा भी चिपके हैं।

राजमोहन सिंह एंड पीछे कुछ पेड़ है।

वो ग्रीन कलर का है और उसका जो साइन है वो ब्लू एंड व्हाइट कलर का है।

अंदर पानी का कलर हरा दिख रहा है और वहाँ पर एक कोने पे बतख का स्टैचू दिख रहा है।

यह एक खेत है खेत में बहोत से लोग खड़े हुए हैं आस-पास दूर-दूर तक बहोत --